अंदर एक घड़ी दिखाई दे रही है।

में एक गैलरी दिखाई दे रही है है उसमे बेंच लगे हुए है कई सारे बच्चे बैठे हुए है।

स्टेज बना हुआ है उस पर हरे रंग का मैट बिछा है पीछे --

आस-पास कई सारे बड़े-बड़े पथरे दिखाई दे रहे है जमीन पर छोटे पत्थर भी है।

खिड़की मे बड़े-बड़े शीशे लगे हुए हैं। उसके आसपास कई सारे --

स्टील की रैलिंग लगी हुई है बाहर एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में कई सारे गाड़ियां --

एक आदमी साइकिल से जाता हुया दिखाई दे रहा है। पास ही एक आदमी --

ब्राउन आ लाल रंग का है। हवेली के ऊपर छोटे-छोटे मीनार बने हुई हैं। कई सारे खिड़किया हैं। कई सारे --

औरंजनन के नाला ऊपर लगी हुई है। दीवारों पर भी लिखा हुआ है। कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

बानियाईन पहने हुए है उसके हाथ में काला रंग का मोबाईल फोन है वह मोबाईल फोन से फोटो लेते हुए दिखाई दे रहा है।